सामने एक व्यक्ति और दिखाई दे रहा है इस दुकान के आगे कुछ फूलों की मालाएं जैसी लटकती हुई दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहे है और इसके बाहर बाहर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है छोटे पत्थर कंकड़ भी दिखाई दे रहे --

इस तस्वीर में मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके आस पास में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है।

पास कुछ ए_सी भी लगी हुई है और कुछ फूल बगीचा दिखाई दे रहा है एक--

और कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं और लाइटें दिखाई दे रही दीवार के पास कुछ कांच भी लगाई हुई दिखाई दे रहे हैं।

कुरियर जैसे दिखाई दे रहे हैं एक बड़ी लाइट दिखाई दे रही है।

मुझे ये कोई डांस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है स्टेज पे गए हुए हैं।

किताबें दिखाई दे रही है और कॉपी दिखाई दे रही है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो इसको बेच रहा है।

और एक बड़ी स्टील की राड भी दिखाई दे रही है और लाइटे दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे सामने एक होटल दिखाई दे रहा है और घनी गाड़ीये और मोटरसाइकिलें भी दिखाई दे रहें कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहें --

इस तस्वीर में मुझे कुछ महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ कांच के बक्से दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर कुछ है।

इस तस्वीर में मुझे एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ बेड भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ नाम भी दिखाई दे रहे हैं खजवाना और पास में कुछ--